मछली मंडी की फोटो है जो की बहुत से झींगा मछली है और अन्य सारे समुद्री मछली है।

यह एक शादी समारोह का है जो की रिसेप्शन का है।

यह एक डैम का फोटो है जो की डैम में बहुत से पानी आ रही है एक नाव है।

यह एक जिओ रिटेलर की ऑफिस है और उधर पीछे एस.बी.आई. ब्रांच है शाखा।

यह एक छत ढलाई का काम चल रहा है । जो कि यहाँ कर रहे हैं | काफी सारे वर्कर हैं । जो कि रात हो गए हैं ढलाई करते करते ।

कोचिंग इंस्टीट्यूट का फोटो है जो की बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है।